यहां पे काउंटर धरा हुआ दिखाई दे रहा है इस साइड भी दुकानदार दिखाई दे रहा है।

शायद घर जैसा दिख रहा है अंधेरी रात दिख रहा है असमान का रंग पूरा --

टाइल्स लगा हुआ दिख रहा है। सभी कुर्सी सा लगा हुआ दिख रहा है। टेबल --

आदमी सब बैठे हुए दिख रहे हैं। बिजली के तार सा दिख रहा है।

यहां पे नदी दिखाई दे रहा है यहां पर नाव दिखाई दे रहा है यहां पे दो तीन आदमी दिखाई दे रहा है एक लेडिज दो लड़का यहां पे ये नाव चला रहा है उस साइड में नाव दिखाई दे रहा है उसमें भी आदमी सब दिखाई दे रहा है यहां पे --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

यहां पे एक दुकान दिखाई दे रहा है यहां पे एल_सी_डी एल_सी_डी सब बहुत सारा धका हुआ दिखाई दे रहा है नीचे में बहुत सारा लाइन से लगा हुआ लैपटॉप जैसा दिखाई दे रहा है।

यहां पे फल फूल का दुकान दिखाई दे रहा है और यहां पे टोकरी में सेव रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

का लगा हुआ दिखाई दे रहा है बगल में बिजली का खंबा दिखाई दे रहा है तार दिखाई दे रहा है आगे भी एक दो ठेला पर आदमी दिखाई दे रहा है।

इसपे घेरा हुआ दिखाई दे रहा है खजूर का पेड़ दिखाई दे रहा है जो हरा कलर तार का है।

बट यहां पे एक पेड़ दिखाई दे रहा है पेड़ पौधा ऐसा लग रहा है जिसका पत्ता सा दिखाई दे रहा है यहां पे आसमान दिखाई दे रहा है जिसका रंग वाइट दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक बड़ा सा पंडाल बना हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें लाइट से चमकते हुए दिखाई दे रहा है।

गाड़ी बिछाया गया है बहुत सारा लाइट का सामान सामान का रंग ब्लैक दिखाई दे रहा लगा हुआ दिखाई दे--

क्योंकि जिम क्लास दिखाई दे रहे हैं। यहां पे जिम करने वाला बहोत सारा सामान ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक लेडीज दिखाई दे रहा है यहां पे ठेला दिखाई दे रहा है यहां पे मराई का घर दिखाई दे रहा है टूटा फूटा यहां पे हरिया पे बाकी सब दिखाई दे रहा है कचरा सा में दिखाई दे रहा है।

फुलाना से लटका हुआ है जो ब्लैक कलर और पीला कलर का है इस साइड भी पोस्टर लगा हुआ दिखाई दे रहा है इस साइड में पोस्टर जिम विम करने वाला दिखाई दे रहा है।

टेबल सा लगा हुआ दिखाई दे रहा है --

यहां पे सीढ़ी दिखाई दे रहा है जिस पर टाइल्स लगाया गया है वहां पे सीढ़ी दिखाई दे रहा है टाइल्स लगाया गया है दिखाई दे रहा है।

बड़ी सी साइड में एक लेडीस है एक महिला भी बैठी हुई दिखाई दे रही है।

पेड़ पैधा सा दिखाई दे रहा है जो हरे कलर का दिखाई दे रहा है यहां पे आसमान दिखाई दे रहा है जो दो कलर का दिखाई दे रहा--

आसमान का रंग भूरा भूरा भी दिखाई दे रहा है कुछ पेड़ का पत्ता दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर मां सरस्वती का एक लड़की रूप लिए हुए खड़ी बैठी हुई दिखाई दे रही है हाथ में गितार धरी हुई है यहां पे एक तिरंगा धरे हुए बहुत सारे आदमी से खाते खाते खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है सेवक सब --

यह एक पार्क दिखाई दे रहा है जिसमें बैठने वाला से बहुत सारा दिखाई दे रहा है यहां पे पैड पौधा से दिखाई दे रहा है यहां पे जमीन से दिखाई दे--